कैफे मैं एक आदमी और उसका दोस्त दोनों मजे से कॉफी पी रहे हैं।

इस दुकान में बहोत सारे अलग-अलग प्रकार के खिलौने हैं।

रिल रिनॉल्ट है यहां उसके आगे --

गाड़ियों को भी जाने के लिए रस्ता बनाया गया है आजू-बाजू में बहुत सारे पहाड़ --

उसके आजू-बाजू में बहोत सारी झाड़ियाँ लगाई गई है।

अंदर की डेकोरेशन बहुत अच्छी दिख रही है लाइट भी लगाई है।

ये यहां पूरी एक फैमिली है इस फैमिली में तीन औरत एक आदमी --

सुंदर दिख रहा है उसके आजू-बाजू में बहोत सारी झाड़ और नीचे हरी-भरी।

थाड़ है और नदी के किनारे --

छे सात आठ बदक है और वो बहोत अच्छे से चल रहे --

और नदी में तीन-चार बहोत सारे बोट --

यह एक आलीशान घर है घर के बाजू में छोटी दीवारें भी बनाई गई हैं।

आजू बाजू में बहुत सारी दुकाने है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या फिर टॉवर --

सीनरी के आजू-बाजू में बहुत सारी झाड़ियां और एक गोल के बीच में --

ब्लू जॅकेट और ब्लू जींन्स उसने शूज और काला चश्मा लगाया है वो फोटो खींच रहा है।

कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है --

यह एक बहोत बड़ा क्रिकेट टेडियम है यहाँ पे लाल और --

तपेद और काले रंग का है और आजू-बाजू में थोड़ी फार झाड़ियाँ भी लगाई गई हैं।

यहा पर एक हेलमेट भी पड़ा हुआ --

इस स्पोर्ट्स की दुकान में --

रस्ता है इस रस्ते में एक दुकान दिख रही है।

यह एक बहुत बड़ा घर है घर की छत --

और उस क्लीनिक की खिड़कियों के परदे टॉवेल --

यह घर पूरा सपेद रंग का बर --

बनाया गया है और आजू-बाजू में झाड़ियाँ भी हैं।

इस वार्डरोब के ऊपर एक ए.सी लगा है यह पूरा वोर्डरोब --

तीन-चार बसेस भी खड़ी हैं --

और दो स्कूटर भी खड़ी है।

यह एक खाने की दुकान है।

सेल वगैरा सब कुछ मिल रहा है।

यह आदमी इस दुकान के सामने खड़ा होकर फोटो खींच रहा है।